व्यक्ति खड़े हुए हैं खिलाड़ी खड़े हुए हैं जिन्होंने ड्रेस पहनी हुई है नारंगी रंग की नीले रंग की और अन्य रंग रंगो की।

डिब्बों के अन्दर में और मछलियाँ कुछ काले रंग की कु --

और ग्रेलर की एक मशीन रखी हुई है यहाँ पर कुछ अं ईटें हैं और कुछ म्म --

यहाँ एक ईमारत बनी हुई है जिसमें नीचे और ऊपर की तरफ़ बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हुई हैं इस पर सफ़ेद और लाल रंग से पुताई हुई है।

और नीचे की तरफ़ मैदान में घास कुछ उगी हुई है सामने की तरफ़ बाइक और लोग खड़े हुए हैं सीमेंटेड बेंच --